और पीला कलर का है ऊपर पीला और एकठो लाल वाला पे पीला है और आसमानी है। और लाल कलर से घेरा हुआ है।